बहती हुई दिख रही है। हमें यहां पर रेत के पहाड़ देखने को मिल रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक बुक शॉप दृश्य दिखाया गया है।

जो कि इस बुक शॉप का मालिक है।

इस तस्वीर में हमें एक इमारत के बाहर का दृश्य दिखाया गया है।

यहां पर दो मोटू वाले कंबल भी रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक शोरूम दिखाया गया है।

इस तस्वीर में हमें कार शोरूम के अंदर का दृश्य दिखाया गया है।

यहां पर एक स्वेत रंग की गाड़ी एक नीले रंग की गाड़ी और एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी हुई है।

हमें यहां पेड़ों का रंग स्वेद दिख रहा है बरफ़ के कारण।

इस तस्वीर में हमें एक चार मंजिली ईमारत के बाहर का दृश्य दिखाया गया है।

इस तस्वीर में हमें एक घर के डाइनिंग रूम का दृश्य दिखाया गया है।

हमें यहां पर व्हाइट कलर का सोफा भी दिख रहा है।

यहां पर हम देख सकते हैं कि एक ब्राउन कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर पुलिस असिस्टेंस रूम लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में हमे एक कॉरिडोर का दृश्य दिखाया गया है।